जैसे के देख पा रहा हूँ एक सड़क के किनारे बोहोत बड़े-बड़े पेड़ है।

एक ये देख पा रहा हूँ दो बड़ा-बड़ा इंधन मशीन लगा हुआ है जिसके चारों कोनों मे बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ है।

जैसे की देख पा रहा हूँ आसमान बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। उसके नीचे एक बहुत बड़ा नदी है। नदी के ऊपर आधा बनाया गया हुआ एक पूल बना हुआ है।